दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने गाड़ी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा बांस गाड़ा गया है।

अह चारों ओर से पेड़ उगा हुआ है।

बहुत सारा बैंजो भी दिखाई दे रहा है जो कि अलग अलग रंग का है।

भीड़ भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

पोस्टर भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।

दृश्य में दुकान दिखाई दे रहा है दुकान में बहुत सारा सामान रखा गया है।

दृश्य में दुकान दिखाई दे रहा है पोस्टर भी लगाया हुआ है।

ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य मे दुकान दिखाई दे रहा है दीवार को वाइट कलर से पेंट किया गया है।

ड्रेस पहना हुआ है। सामने बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

चारों ओर से पेड़ उगा हुआ है।